हम्म जिसमें आकाश खुला हुआ है लेफ्ट में व्हाइट कलर की बिल्डिंग है।

एंड एक येलो सी बाउंड्री दिख--

ब्लैक ब्लैक कलर का कपड़ा पहन के--

फ्लैट में ब्लू ब्लू कलर का कुलर लगा है।

लेफ्ट में चेयर्स है राइट में चेयर्स है।

मैं एक इमेज को देख--

मैं एक इमेज को--

उसके बगल में एक आय का--

मैं एक इमेज को देख रही हूं।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

गेट्स एंड ग्रीन कलर की इसमें--

इमेज में होटल वा।

इमेज को देख रही हूँ जिस--